उपर उपर और उपर कंपनी के उपर पत्रे क पत्रे लगे वाले है।

और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया है मंडप के नीचे बहुत सारे खुरसिया लगे वाले है और ओ वाइट कलर की खुरसिया है और डेकोरेशन में --

रु उसके बगल में एक भगवान की मूर्ती है ओ गणेश मूर्ती दिख रही है और उस के अ उसके सर के उपर फैन लगे वाला है।